--करोगे कुछ फेंका गया है प्लास्टिक की साइड में एक जंगल है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा-सा मैरिज हॉल दिख रहा है जिसमे बहोत सारी कुर्सियां है जो वाइट कलर की है उसमें गोल्डन कलर का रिबन बैंड --

त पैर के उसके एक आदमी बचा रहा है फिर साइड में पूल हैं उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं।

इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिख रहा है जो जिसका दीवार जालीदार है फिर पीछे घर है इसमें लाइट जली हुई है कुछ बल्बे लगे हुए है पड़े पौध में--

फिर आगे एक टेबल है चाढ़ा सा जिसमे एक स्टोव रखा गया है उसके ऊपर कढ़ाई है उसके बड़ा सा डे--

सेंटर लिखा हुआ है जो रेड कलर में है और नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है अर टीचर्स --

साइड में एक बक्सा है जो व्हाइट कलर का है इसके ऊपर एक बोतल है जो पर्पल कलर का रखा गया है फिर साइड में एक कुर्सी है जो ऑरेंज कलर का इसमें एक आदमी बै --

मिट्ठी का बना हुआ है जो ब्राउन कलर का दिख रा है और पीछे आसमान है जो हल्का पर्पल कलर का दिख रा हैं।

कलर की है फिर बाइक भी है जो ब्लैक कलर फिर एक टैम्पो दिख रहे है पीछे का हिस्सा दिख रहा है येलो कलर का दिख रहा है बहुत सारी पोले हुई है जिसमे --

फिर साइड में एक और अलमारी दिख रहा है जिसमे बहोत सारे किताबे रखी गई है फिर कुर्सीया दिख रही है जो आसमानी कलर के है जिसमे कुछ बच्चे कुछ डाइनिंग टेबल में कुछ लिख --